पत्थर की जमीन नजर आ रही है।

लाल रंग की पानी की टंकी रखी हुई है एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

घास का स्पर्श नजर आ रहा है।

लंबे-लंबे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

स्कूटर के पास दो लोग खड़े हुए हैं।

पानी में भी कश्तियां चलती दिखाई दे रही हैं बादल नजर आ रहे हैं।

एक व्यक्ति गाड़ी सुधारता हुआ दिखाई दे रहा है।

कच्चा रोड दिखाई दे रहा है लाल मिट्टी नजर आ रही है पत्थर --

बिल्डिंग के साइड में एक पेड़ नजर आ रहा है।

एक साइड में बोर्ड है उस पे सींस नाइनटीन इग्टीफाइव लिखा हुआ है।

ये तस्वीर पेट्रोल पंप की नज़र आ रही है एक सफेद गाड़ी बाहर खड़ी हुई है।

इस तस्वीर में एक काली ट्रे में चार--

बहुत सारी छोटी-छोटी चट्टान जैसी दिखाई दे रही हैं।

मरी हुई मछलियां नजर आ रही हैं।

खाली डोरी नजर आ रही है।

ऊंचे नीचे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

सबसे ऊपर सिटी कार्ड लिखा हुआ है।